बड़ा हॉल दिख रहा है।

गिरजा घर के सीन लगै छे।

ई पहाड़ के पानी गिरै छे।

के दुकान छे। बंद छे। जूता चपल के छे। महिंद्रा के बैंक छे।